ग्राउन्ड में मिट्टी भी है साइकिल भी है गाड़ी भी है।

सामने रास्ता है आई.टी.आई इंस्टिट्यूट है खुला आसमान है नीली बॉउन्ड्री है उसमें पिक कलर की भी बॉउन्ड्री है जाली वाला गेट है।